यहाँ पे दुकानदार है ये ब्लू कलर की है और ये व्हाइट कलर की है।

यह एक बोहोत ही खूबशूरत होटल है जिसमे की एक बत्तक बनी हुई है।

जहाँ पे एक बहोत ही अच्छा एक दुकान है जिसका नाम मै अमरदीप उसके ऊपर जॉकी कंपनी की प्रचार की गई है फिर उसके ऊपर अमरदीप फैंसी ड्रेसेस लिखा हुआ है यह दुकान बहोत ही अच्छी दिख रही है।

दो जन स्विमिंग कर रहे हैं और सब देख रहे है ऊपर एक पेड़ है जिसमें की गुलाबी रंग के फूल खिले हुए नीचे लगेज है।

यह मॉल है जिसका नाम वी टू है और यहां लिखा हुआ है वैल्यू एंड वैरायटी --

यह एक नदी है जिसमें बहुत सारे पक्षी तैर के उड़ के जा ड़हे हैं।

खेल रहे हैं झूले झूल रहे हैं।

बहुत सारे उजली लाइटिंग है नीचे फर्श है ।

यह तीन पेंटर्स घर को पेंट कर रहे हैं | नीचे फर्श पे टाइल्स लगा रहे हैं | एक पेंटर गुलाबी रंग का शर्ट पहना है ब्लू जिंस पहने हुए हैं।